ये चित्र चिपकाए गए हैं। यहाँ पर --

यह ग्राउंड के चारो तरफ से --

इस ग्राउंड में स्कूल द्वारा क्रिकेट के खेल दिखाई जा रहा है।